कुर्सी भी दिखाई दे रहा है डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है एक बाइक भी दिख रहा है लाइन वाला तार भी दिख रहा है।

हरे हरे घास जमा हुआ है रंग का आकाश दिख रहा है पेड़ भी दिख रहे हैं।

व्यक्ति दिखाई दे रही है फोटो का मूर्ति भी रखा हुआ है।

यह एक मिठाई का दुकान दिख रहा--

गुलाब जामुन भी दिखाई दे रहे हैं लड्डू भी दिखाई दे रहे रसगुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहे है दीवार पे फोटो चिपका हुआ है दीवार में क्रास का चिन्ह भी है।

बरांडा का दृश्य दिखाई दे रहा है बरांडा का कलर सफेद --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

दरवाजे में ताला मार हुआ है।

यह एक गार्डन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कलर का गास दिखाई दे रहा है।

घर का कलर है क्रीमी और सफेद।

जिसमें घर दिखाई दे रहे--

नीला कलर का आकाश दिखाई दे रहा है।

गाड़ी भी दिख रहे हैं लाल कलर का गाड़ी है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक समुंद्र का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पीला कलर का फूल दिखाई दे रहा है।